व अपार्टमेंट के आस-पास दीवार की मदद से बौंड़री बनाई गयी हैं तथा अंदर की तरफ एक ट्रांसफॉर्मर लगा हुआ है।

यह एक अपार्टमेंट है जिसके बाहर नाम प्लेट लगा है जिसप मथरा वेदा अपार्टमेंट लिखा हुआ है।

सामने की तरफ रोड निकला हुआ है | रोड के किनारे पर बहुत सारी कार पार्क हैं तथा अपार्टमेंट के नीचे एक कार खड़ी हुई है। गेट (Gate) पर एक व्यक्ति खड़ा हैं | आसपास पेड़ पौधे लगे हुए हैं |

गमले के ऊपर पोधे लगे हुए हैं सामने की तरफ बहुत सारे घर बने हुए हैं व मंदिर हैं आस-पास पेड़-पौधे लगे हुए हैं।

बाइक और अन्य व्यक्ति आ रहे हैं आसपास पेड़-पौधे लगे हुए हैं और बिजली के खंभे लगे हुए हैं।